और एक पत्थर से बनी अअ सदपट्टी दिखाई दे रही है।

और सामने लोहे का एक प्रतीक्षालाय बना हुआ है उसमे --

इसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है।

और साड़ियां लगी हुई दिख रही हैं नीचे --

और एक लकड़ी का खम्भा दिखाई दे रहा है।

एक आदमी उस पे खड़ा हुआ दिख रहा है छत पर।

नीचे का ग्रीन कलर का पर्स दिखा फर्श दिख रहा है।

दो सीमेंट के खंबे बने हुए दिखाई दे रहे है पूल के नीचे।